एक साइकिल भी नजर आ रही है एक स्कूटी पे अ अ आदमी सवार है और यहाँ पर रेड कलर की बाइक नजर आ रही है।

और काफी ज्यादा स्पेस नज़र आ रहा है यहाँ पे।

बैठा हुआ है गाइस जो की जीन्स पैंट पहना हुआ है और उसका एक लड़का टी-शर्ट पहना हुआ है उसके पीछे।

और यहाँ पे एक व्यक्ति का हेयर कटिंग हो रहा है।

इस तरह से वो दीवार को दिवार के ऊपर हैमर से वार कर रहे हैं।

जो की लाइट वगेरा जल --

हेल्लो गाइस ये किसी मॉल का तस्वीर नज़र आ रहा है गाइस ।

उसके जस्ट पीछे में बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसके जस्ट पीछे में एक और --

हलो गाइज यहाँ पे उम्म बहोत बरा मार्केट नज़र आ रहा है गाइज और यहाँ पे कुछ बैंक वगेरा भी --

और उनके ऊपर हेलमेट पीला कलर का है उसके हाथ में पेचकस है और वो --

और यहाँ पे बहोत सारा व्यक्ति भी है कुछ मूर्ति वगेरा को भी रखा गया है।

मूर्त अ उसका मूर्ति जो है वो बैठा हुआ है उसमें उसके ऊपर और --

हेलो गाइज यहाँ पे एक बहोत बड़ी झील नज़र आ रही हैं गाइज .

वहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे हैं किसी के सर पे टोपी वगेरह हैं और कोई रेड कलर में हैं कोई वाइट कलर में हैं।

और शीशा से पैक किया हुआ है और बिलकुल अन्दर बहोत सारे सॉस वगेरह का डब्बा रखा हुआ है।

काफी मज़बूत दिख रहा है।